जो की वाइट कलर पेंट से है और इसके दरवाजे ब्लू कलर की उधर भी एक कार लगी हुई है जो की जो इधर बाइक पे एक लगी --

ये भी एक पार्क है यहाँ पे देखिये एक सोलर प्लेट जैसा लगा हुआ है और देखिए यहाँ पे हरयाली और सफाई बहुत अच्छा है।।

बांस की थंब लगाई हुई है और देखिये ऊपर ढ़लैया जैसा है।

बाकी जो प्लेट है वो खाली है और देखिए उधर दो एक थमसब और बिसलेरी की बॉटल है और देखिए दो ग्लास भी रखी हुई है।